इसे देखने के लिए लोग बहुत ही दूर-दूर से और घुमने के लिए आते है यहाँ बहुत ही सुंदर-सुंदर लोग और बड़े-बड़े लोग रहते हैं इस घर में इसके आस पास दो रोडे हैं जो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है।

यह एक हमे बहुत ही अच्छा सा दृश्य दिखाया गया है यह दृश्य बहुत ही सुंदर और बढ़िया है | इसे देखने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं | यहाँ बहुत सारी गार्डनिंग की गयी है और लगाई गयी है यह दिखने में काफी सुंदर और बढ़िया है ।

यह एक बहुत ही सुंदर सा मार्किट है यह मार्किट दिखने में काफी बढ़िया और काफी सुंदर है।

यह एक हमे बहुत अच्छा सा इमेज दिखाया गया है यह इमेज बहुत ही सुंदर है और यह इमेज बहुत ही बड़ा है।

यह एक बहुत ही अच्छा सा एथिक्स क्लास है यहाँ बहुत सारे दूर-दूर से लोग बच्चे पढने के लिए आते हैं।